सामने एक घर है घर के आसपास बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं ।

जिसके पास में काले रंग के बड़े-बड़े बक्से रखे हुए हैं।

ऊपर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है यहाँ पर स्टेज पे बहुत सारे कन्याये खड़ी हुई है।

सामने एक सड़क है सड़क पर एक ऑटो और बहुत सारे वाहन चल रहे हैं।

ये जो मूर्ति है वो बहुत ही प्राचीन है आस पास बड़े बड़े पेड़ पौधे है।

और ऊपर एक काले रंग का टीन दिखाई दे रहा है।

सामने खेल का मैदान है ।

यहां पर बहुत सारे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और तीन लोग दिखाई दे रहे हैं ।

ये अस्पताल है जहां पर ये सामने आदमी खड़ा हुआ है ।

यह वॉर्डबॉय है जिसने नीले रंग के कपडे पहेने हुए है।

और मुंह पे मार्क्स लगाया हुआ है इसके सामने ये तीन बड़े-बड़े --

और सामने साफ सुथरा पड़ा हुआ है ।

नीचे कुछ चड्डे भी नजर आ रहे हैं ।

इन जहाजों का रंग सफेद है यह बहुत ही बड़ा जहाज है ।

सड़क के आसपास बहुत ही सुंदर भवन बने हुए हैं ।

ये बहुत ही ऊंचा भवन है जो बहुत ही --